जो की बहुत हरियाली है यहाँ पर सुन्दर लग रहा है। बहुत अच्छा लग --

और मार्किट है एक लड़का है जेट्स है जो मुँह में एथी लगाया है कच्छा है।

ढलैया हो रहा है जोकि बहुत अच्छा लग रहा है देखने में। सुंदर है यहाँ का और बहुत ख़ूबसूरत लग रहा है देखने मे सब कुछ ठीक-ठाक है यहाँ पे। एक दो लोग भी है यहाँ पर बहुत अच्छा लग रहा है देखने मे |

और अच्छा भी लग रहा है यहाँ का सिन बहुत सुन्दर है उजाला है यहाँ पर यानी --

और ये चाहिए भी सुधरना भी चाहिए और यहाँ पे बच्चा भी --

बना के रखा है लोग पूजा के लिए जो की बहुत अच्छा लग रहा है लड्डू और यहाँ पर दो तीन जेंट्स भी हैं लोग।

क्योंकि बहोत सुंदर लग रहा है यहाँ का हरियाली ।